सामने गाइडल जिन कलर से प्लांट्स नर्सरी विला लिखा हुआ नजर आ रहा है।

नए स्टॉप दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा रोड नजर आ रहा है।

दीवाल नजर आ रहा है दिखाई दे रही है।

यह रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है पटरी दिखाई दे रही है लोहे के खंभे लगे है चारों तरफ सभी लाइने दिखाई दे रही है।

यह कंपलेक्स नजर आ रहा है जिसमें बनी हुई हैं बोर्ड में में अमृत धागा लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे--

सामने एक बड़ा पार्क नजर आ रहा है।

स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा चप्पल दिखाई दे रहा है।

एक खंभा नजर आ रहा है जिसमें बहोत सारी वायर दिखाई दे रही है।

यहां क्लास रूम नजर आ रहा है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट और--

वाइट कलर का दीवार है बोर्ड लगा हुआ है सीलिंग बनी हुई इसमें कुछ समान रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक ब्लू कलर का गेट नजर आ रहा है व्हाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ जिसमें लाइट दिखाई दे रहा है बना हुआ बाहर पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये ऑफिस भी नजर आ रहा है व्हाइट कलर का दीवाल है सामने की दिवाल --

व्हाइट और रेड कलर का दीवाल दिखाई दे रहा है। लोहे की खिड़की नजर आ रही ब्लैक कलर की बहोत सारी बेंच दिखाई दे रहें हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैंची पेपर --

हमे रोड नजर आ रहा है। एक व्हाईट कॉलर की स्कूटी खड़ी हुई है। बड़े से खंभे दिखाई दे रहे हैं। पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें साहू नर्सरी तेलीबांधाल लिखा नजर आ रहा है यह एक नर्सरी है।

टेबल नजर आया जिसमें एक आदमी बैठकर नाश्ता दिखाई दे रहा है पानी का जग है ग्लास है प्लेट है।